इसके बाहर एक बाइक भी खड़ी है।

और इसमें एक काफी बड़ा पेड़ भी है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा होटल दिख रहा है।

इसमें कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

जिसमें काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स दिख रहे हैं।

यह पिक्चर एक बिल्डिंग की है।

जिसके नीचे घास उगी हुई है।

और इसके चारों तरफ काफी बड़े-बड़े--

ये पिक्चर एक बैंक का है।

इसके बाहर काफी सारी गाड़ियां खड़ी है।

यह पिक्चर एक स्टूडियो का है।

जिसमें कुछ चेयर्स और एक लैपटॉप भी है।

इसकी दीवार ब्लैक कलर की है।

ऊपर की साइड लाइट भी जल रही है।

यह पिक्चर पिज़्ज़ा हट के रेस्टोरेंट की है।

इसमें कुछ पौधे भी दिख रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

ऊपर की साइड रेड और वाइट बैलुनस लगी हुई है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइल्स भी दिख रही है।

और इसकी दीवार वाइट कलर की है।

और दो विंडोस भी नजर आ रही है।

इसके टेबल्स के चारों तरफ--

नीचे की साइड कारपेट भी बिछी हुई है।

जिसमें दो कार्स नजर आ रही है।

आगे एक रेड कलर की शानदार बिल्डिंग भी है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

और इसमें काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और आगे काफी सुंदर स्टेज है।

और इसमें कुछ विंडोस भी दिख रही है।

यह पिक्चर एक बिल्डिंग की है।

यह सारे सामान ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पैक्ड हैं।

ये पिक्चर एक जिम की है।

जिसमें काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स दिख रहे हैं।

जिसका नाम रोटी रेस्टोरेंट एस बैंक्यूट है।

इसके बाहर कुछ बाइक्स भी खड़ी है।

और इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे हुए हैं।

बाहर की साइड भी है।

और इसकी दीवार वुडेन कलर की है।

इसमें ग्लासेस भी लगी हुई है।

और इसमें कुछ पौधे भी दिख रहे हैं।

जिसके बीच से एक रोड गया है।

ये पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

नीचे वाइट कलर की टाइल्स भी है।

ऊपर कुछ लाइट्स भी नजर आ रही हैं।

नीचे की साइड वाइट और ब्लैक भी है।

और यह काफी टेस्टी भी है।

इसमें कुछ बुटके भी नजर आ रहे हैं।

इसके बीच में दो सिग्नल टावर भी है।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

इस पिक्चर में काफी सारी कैंडल्स जल रही है।

इसमें एक ब्लैक वायर भी दिख रही है।

कार बनाने के सामान भी दिख रहे हैं।

इसमें ग्रीन कलर की ग्रिल लगी हुई है।

और इसके दीवार का कलर येलो है।

बाहर की साइड कुछ वाहन भी नजर आ रहे हैं।

ये पिक्चर एक हॉस्पिटल का है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइस है।

इसमें काफी कंफर्टेबल टेबल्स और चेयर्स लगी हुई है।

जिसमें काफी ज्यादा गहरा पानी है।

ये पिक्चर एक जिम की है।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

यह पिक्चर एक लिविंग रूम की है।

इसमें एक ब्लू कलर का सोफा भी है।

इसमें एक महिला साफ-सफाई कर रही है।

इसके चारों तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही है।

इसमें कुछ सीटिंग बेंच भी लगे हुए हैं।

और इसमें चार चेयर्स भी लगी हुई है।

यह पिक्चर एक रिजॉर्ट का है।

ये पिक्चर एक पार्क का है।

जिसमें रास्ता बनाने का काम चल रहा है।

और पीछे काफी सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इसमें कुछ ट्यूबलाइट्स भी जल रही है।

और नीचे की साइड कारपेट जल रही है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

और आगे दो घर दिख रहे हैं।

जिसमें कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं।

इसके दीवार का कलर पिंक है।

और इसमें एक बारबर भी नजर आ रहा है।

इसमें काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स दिख रहे हैं।

वाइट ब्लैक टाइल्स भी है।

इस पिक्चर में एक चुनाव में खड़ी हुई महिला का घर दिख रहा है।